एक भगवान का मंडप दिख रहा है जिसमे यहाॅं पे भगवान का मूर्ति है यहाॅं पे स्टेज में दो पुजारी पूजा कर रहे हैं।

यहाँ पे एक भगवन का स्थान दिख रहा है इस भगवान के स्थान में बहुत सारा भगवन का मूर्ति दिख रहा है।

के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है एटीएम के अंदर दो आदमी खड़ा हुआ है| एटीएम के बाहर कुछ औरत भी खड़ा हुआ है एक विध्या औरत भी खड़ा हुआ है।